यह लोग ढोल बजाते हो नजर आ रहे हैं यह फोटो किसी मांगलिक कार्यक्रम का दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें मुर्गी पालन का फॉर्म दिखाई दे रहा है।

इसके बीचों बीच में काफी फूल लगे हुए हैं और नीचे इसकी पत्तियां दिखाई पड़ रही है जो काफी हरी हैं।

और होटल के अंदर काफी कुर्सी और मेज़ेज रखे हुए है जिनका कलर पीला दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एल एल ओडी नामक एक शोरूम दिखाई दे रहा है।

नीचे कुछ कूलर भी रखे हुए हैं और यहां कंपनी के पीछे पोस्टर भी लगा हुआ है।

और ऊपर हमें आसमान दिखाई दे रहा है जिस पे काले कलर का बादल छाया हुआ है।

स्कूल पर हमें काफी गाय भैंसे और बछड़े दिखाई दे रहे हैं जो कि बैठे हुए--

यह गेट बहुत ही प्यारा है और बहुत ही बड़ा है जो कि काला कलर में और इसके ऊपर निकासी की गई है चित्रों की।

यह दृश्य बोहोत ही प्यारा है इसमें काफी भीड़ का दिखाई पड़ रहा है।

मंदिर के आगे या काफी खूबसूरत गेट दिखाई दे रहा है जोकि काफी कलर में है।

इस तस्वीर में हमें एक ऑफिस का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यह सोफा काले कलर का है और इसके ठीक ऊपर छत सफेद है।

इस तस्वीर में हमें सहनाज़ हुसैन नामक कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं जो प्लास्टिक के हैं।

इस तस्वीर में हमें हैप्पी बर्थडे नामक एक कार्यक्रम का स्टेज दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक पुरानी नदी का दृश्य दिखाई दे रहा है।

और यहां पर काफी पंछियाँ दिखाई दे रही हैं।

यह नदी काफी बहती हुई नजर आ रही है इसके ठीक थोड़ी दूर पर काफी पत्थर दिखाई दे रहे--

अंदर दो आदमी खड़े हैं जिनका एक चेहरा ब्लर है और सामने हाथ में पट्टी बांधे इंसान खड़ा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें विनायक स्टूडियो कंप्यूटर ऑनलाइन पोस्टर नजर आ रहा।

इसके ठीक पीछे हमें काफी घर दिखाई दे रहा हैं जिसके अगल बगल काफी हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

जिसका कलर सफेद है और ऊपर टीने लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक वर्कर फोटो लेते हुए नजर आ रहा है।

इसके ठीक पीछे सरिए के बने कुछ सामान रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जहां पर काफी हरे भरे पेड़ पौधे काफी दूर में लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक हाईवे का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर ढेर सारे सामान मिलते हैं यहां कैफे सजाया गया है।

यह तस्वीर एक फैक्ट्री का लग रहा है जिसमें एक व्यक्ति फोटो लेते हुए नजर आ रहा है।

ऊपर हमें काफी छतरियों के छत दिखाई दे रहे हैं और दिवाले सफेद कलर की है।

यहां पर काफी लोग खड़े हुए हैं शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।

ये सफेद कलर का खड़ा हुआ है इसका चेहरा ब्लर है।